पास बहुत सारे पेड़ पौधे हैं।

एक ट्रैकर ट्रैक्टर भी दिखाई दे रहा है जो पेट्रोल टंकी के तरफ बढ़ रहा है।

ये एक बहोत बड़ा मंदिर है और मंदिर के ऊपर पंडाल के ऊपर एक बहोत ही सुंदर सा पूजा अकार का डिजाइन दिया गया है।

बहोत सारा जक्शन के अंदर बहोत सारे आदमी लोग भी है।

काफी सुंदर है काफी शान्त जगह होता है।